यहाँ पर हमको दुकान दिखाई दे रही है दुकान का बोर्ड लगा हुआ है जो सफ़ेद कलर का लगा हुआ है उसका शटर है जो काले रंग का दिख रहा है नीचे जमीनें दिखाई दे रही है जो पत्थर के बने हुए हैं।

यहां पर हमको एक जिम दिखाई दे रही है जिम की छत पीले रंग की है जिम की जमीन दिखाई दे रही है जमीन पर हरे रंग का तारा पड़ा है एक लाल यहां पे स्टूल रखा हुआ है दो यहां पे लड़ लड़के दिखाई तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमको डिप्स मारने की मशीन यहां पर दिखाई दे रही है।

ज़मीन दिखाई दे रही है। यहां पर देखिये साबुन के पैकेट रखे हैं चाय के पैकेट काले पीले रखे हैं अगरबत्तियां रखी हुई हैं पीला पैकेट --

सिलेटी कलर का एक सफेद कलर का घर दिखाई दे रहा है पीछे व्हाइट व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है पीछे लगे तार दिखाई दे रहे हैं हरा पेड़ दिखाई दे रहा थोड़ा आसमान दिख रहा है नीचे की जमीन दिख रही है यहाँ पे।

यहाँ पर लाईट के खंभे लगे हुये हैं। पीछे यहाँ लड़के बैठे हुये हैं। एक लड़का नीले के शर्ट पहने दौड़ रहा है। पीछे की छत गुलाबी दिख रही है। लाल दीवाल दिख रही है।

सामने बोतले रखी हुई है बगल में एक और दीवार है जिस पे सफेद कलर की दीवाल है उस पर बनी हुई है नीचे रोड दिख रही है रोड पर टैंकर जैसा बना हुआ है गेट जो है दिख रहा है।